बनती हुई घर का बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है।

एक पत्थर रखा हुआ है तर्जुयी रखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे कचरे फेक हुए हैं कुछ प्लास्टिक फेक हुए हैं।

एक महिला है जो चढ़ रही है सीढ़ी पर।

अगल-बगल और भी जानवर है आसमान साफ है धूप आ रहा है।

ऊपर में रंग बिरंगे बैलून लगाया हुआ है बैलून का कलर येलो और ब्लू है।

बीच में एक टेबल है टेबल पे एक पर्दा डाला हुआ है उस पर फूल है लाइट जल रहा है।

यहां पर मस्जिद का दृश्य दिख रहा है ऊपर में लाइट लगाया हुआ है जो ग्रीन कलर का है।

यहां पे बहोत सारे मोमबत्ती जल रहे हैं दिया में और दिया पूरे मिट्टी का बनाया हुआ है।

एक खंभा जैसा है जिसपे रखा गया है और वो रेड कलर का है।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

सामने छोटे छोटे पोस्टर भी लगाए हुए हैं बीच में छोटा सा गेट बनाया हुआ है।

तीर धनुष लिया हुआ है और करकट से छाया हुआ है ऊपर अगल बगल पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

बहुत सारे बॉटल रखा हुआ है पानी चढ़ाने वाला रखा हुआ है।

ओटा बनाया हुआ है ओटा पे गमला रखा हुआ है फूल वाला।

अगल बगल बड़ा बड़ा पेड़ पौधे लगाए हुए है।

एक लाइट लगाया हुआ है सामने पोस्टर भी लगाया हुआ है।

डायरी रखा हुआ है बगल में कुर्सी लगाया हुआ है ब्लैक कलर का।

कुछ मशीनें भी लगाई हुईं हैं टायर्स रखा हुआ हैं ऊपर टायर ब्लैक हैं।

अगल बगल पेड़ पौधे लगाए हुए हैं आसमान साफ है।

सामने पोस्टर लगाया हुआ है तीनों दुकान में।

यहां पर पुरानी बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है जो फूटी चुकी है।

बैलून का कलर व्हाइट है रेड कलर का है।

बहुत सारे सिरप रखा हुआ है विटामिन्स का और टैबलेट रखा हुआ है डब्बा में।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

छोटा सा रैक बनाया हुआ है उस पर ट्रॉफी रखा हुआ है।

यहां पे शोरूम का दृश्य दिख रहा है इसपे कई सारे लगाए हुए हैं।

इस पर डाल्टनगंज ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ है।